पहनी हुई है गुलाबी और सफेद रंग में पीछे की तरफ दीवाल है। दीवाल का रंग सफेद है और चैनल लगा हु --

ता फूल माला तग टंगा हुआ है और दोनों तरफ छोटे-छोटे मंदिर बने हुए है।

के बालो पर नारंगी कलर की क्रिप्स लगी हुई हैं।

की पीछे की तरफ हमे एक ईमारत दिख रही है जिस पर गोविन्द पैलेस लिखा हुआ है उपर गणेश जी की फोटो बनी हुई है।

एक व्यक्ति ने काले रंग की टी-शर्ट --